इधर बहुत सारे कारा लगे हुए हैं और ऊपर साइड बहुत कारा है।

और टैरिस है टैरिस के ऊपर बहुत सारे--

अ नीचे साइड घरा है पत्थरे के घर है कुछ स्लैप है कुछ टेरेस आ है।

स्कूटी है और कार है एक औरत टू व्हीलर के पास खड़ी हुई है।

और पीछे भी एक आदमी वर्कआउट कर रहा है एक आईना है सामने।

हां तकिया है ब्लैक कलर का और ऊपर साइड लकड़ियां लगे हुए हैं बहुत सारे दरवाजे है।

पहाड़ पे और एक रस्सियां भी है लगी हुई जो बिजली के खंबे के पास है पतरे के--

एक बहुत बड़ा सा बंगला है बंगले के --

पन नीले कलर का पोता है जो लगे हुआ है।

एक है उसके अंदर गंदा पानी है निकल रहा है।

स्टेट बैंक का बहुत बड़ा बैंक है और एस_बी_आई लिखे हुआ है बॉर्ड पे।

नाव है बहुत बड़ी-बड़ी सी और नाव के ऊपर कुछ आदमी खड़े हुए हैं।